एक वॉश बेसिन बना हुआ है उसके सामने भी एक कुर्सी रखी हुई है।

एक आदमी बैठा हुआ है कुर्सी के ऊपर उसको जैकेट लगा के हैं।